ये मछली मार्केट है यहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं औ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ रखी हैं एक ग्रीन कलर की बरसाती बिछी हुई है चार आदमी बैठे हुए हैं।

दो लड़के है यहाँ पे जो फोटो खिचवा रहे है एक ब्लैक कलर की टीशर्ट पहना हुआ है और एक रेड एण्ड व्हाइट कलर की और बहुत सारी बड़ी-बड़ी मशीने रखी हुई हैं। ट्रेड मे--

एक लड़का खड़ा हुआ है जो फोटो ले रहा है कांच मे देख कर यहाँ बहुत सारी मशीनें रखी हैं जो की ब्लैक एण्ड येल्लो कलर की कॉम्बिनेशन मे है पीछे एक लड़का डंबल सा उठा रहा हैऔर यहाँ पर ट्रेड मिल है साइकलिंग है।

लाइट क्रीम कलर का है और पिस्ता कलर का है और ग्राउंड में छोटी-छोटी घास उगी हुई है और बहोत ही बड़ा और बहोत ही प्यारा ग्राउंड --